कुछ बिल्डिंग्स दिख रही है सामने और कुछ बाइक खड़ी हुई दिख रही है यहां पर और सामने पेड़ वगैरा भी लगे हुए दिख रहे हैं यहां पर--

यहां कुछ चेयर्स दिख रही हैं और ऊपर छत में--

और यहां पर एक ट्रक दिख रहा है।

और सामने कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं माताओं की।

ये एक फर्नीचर दिख रहा है एक ऑफिस की इमेज दिख रही है यहाँ।

सामने कुछ और खेत भी दिख रहे हैं।

सामने एक छोटा सा घर बना हुआ यहां पर दिख रहा है।

एक छोटी सी शॉप है जिसके अंडर ए_टी_एम रखा हुआ है।

साइड में कुछ बलूंस लगे हुए दिख रहे हैं इसमें--

और सामने की ओर कुछ झाड़ लगे हुए हैं।

और यहां कुछ व्हाइट कलर की चेयर्स लगी हुई है ऊपर छत में लाइट लगी हुईं हैं।

और एक वाइट शर्ट पहन कर एक आदमी यहां बाहर--

और आसपास पहाड़ में से कुछ झाड़ पौधे निकले हुए दिखा रहे हरे भरे।

जो बंद है और इसके पास में दो शटर लगी हुई है दो दुकान दिख रही है।

और ऑरेंज पीला और गुलाबी कलर की साइकिल है और इसमें लाइट लगी हुई भी दिख रही है।

ये एक झरने की फोटो है ऊपर पहाड़ पर से ये झरना नीचे खाई मे गिरता हुआ दिख रहा है।

यहां पर काफी सारे पेड़ दिख रहें है बड़े बड़े लगे हुए--

यहां पर तीन चार भैंस और गाय दिख रही है।

और कुछ आदमी तीन चार आदमी खड़े हुएं हैं एक शॉप पर।

इसमें एक कार दिख रही है।